यहां पर कुर्सीयां रखी हुई हैं।

यहां एक पिक्चर दिख रही है यह एक सब्जी मार्केट की पिक्चर है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर दो लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है जिस पर बहोत सी लाइट लगी हुई है।

मेडिकल शॉप के बाहर बड़े अक्षरों में दवाईयां लिखा हुआ है।

यह एक फर्नीचर की दुकान है।

वहां पे पिक्चर दिखाई दे रहे है।

शॉप के अंदर बड़े बड़े टायर रखे हुए हैं।

यहाँ एक पिक्चर दिख रही है यह एक जिम की पिक्चर है।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

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है यह एक बुक शॉप है।

यहां पर एक काउंटर बना हुआ है।

यहां पर एक बड़ा काला गेट लगा हुआ हैं।

यहां पर एक दवाइयों की दुकान दिख रही है।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

दुकान के बाहर आइसक्रीम का पोस्टर है।

यहां बहुत सारे लोग फोटो खींचा रहे हैं।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रहे है।

यहां पर जगह पर मिट्टी दिख रही--

यहां पर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर एक खेत जैसा दिख रहा है।

एंबुलेंस में नीले रंग का स्टार बना हुआ है।

यहां एक आदमी ढोलक बज रहा है।